और पुरे फैमली के साथ फ्रेंड्स के साथ बहुत खुस दिख रहे है और उधर ऊपर एक लाइट है।

ये भी एक्सहिबिशन का झूला है जो बड़े बड़े आदमी लोग बैठे हैं कपल्स के साथ फ्रेंड्स के साथ बहनों के साथ भायो के साथ और वो बड़ा बोट का झूला दिख रहा है।

ये कुछ मोटर जैसे गाड़ियां है। है और इधर बलून्स ऊपर लगे हैं और एल.ई.डी. लाइट्स हैं।

ये एक टेम्पल है। टेम्पल के बाजू बड़ा सा एक टैंक का पानी है। पानी का टैंक है।

ये मंदिर में कुछ फक्शन चल रहा है।

और उधर ईंट है। उधर बोरिया है। उधर लड़कियां हैं। उधर एक आदमी जा रहा है। एक लाइटिंग --

यह शिवा का एक शिवलिंग है। उधर एक शाम के जैसा कुछ बना हुआ है। उधर देवी मां है। वहां देवी मां को चादर ओढ़ाया हुआ है।